इस तस्वीर में हमें कई सारे लोग खड़े दिख रहे हैं तो कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

अ जाली के उस पार हमें खुला आसमान दिख रहा है।

दो खिड़की बंद हुई दिख रही है घर के ऊपर छत दिख रहा है।

इसके पीछे सीमेंट से बनी हुई दीवार बनी दिख रही है और उसके ऊपर दो झंडे लगे हुए दिख रहे हैं।

लड़कियों के कपड़े के रंग लाल दिख रहे हैं तो कुछ लड़कियों के कपड़े के रंग हरे और नीले दिख रहे हैं।